रात के समय में अँधेरा दिखाई दे रहा है और सभी तरफ लाइट जल रही हैं।

जंगल ही जंगल है। .

और यहां पे एक पक्का का रोड बना हुआ है।